जिसके ऊपर बहोत सारे लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं।

श्रद्धालुओं का आना जाना यहां पर डेली बेसिस पे लगा रहता है।

इसपे दो लोग सवार हो सकते हैं ये ब्लू कलर फिरोजी रंग और ब्लैक कलर में बनाया गया है।

इसमें ऑरेंज भी दिखाई दे रहे हैं और लंबी लंबी लडिया पिरोई गई है।

यह फोटो एक पर्स की शॉप लग रही है जहां पर--

लेडीज और जेंट्स दोनों शॉपिंग कर रहे हैं।

यह एक भठिंडे का रोज गार्डन है जहां पर बच्चों के खेलने के लिए झूला लेल लेने के लिए ए--

बच्चे देख कर बहुत ही खुश होते हैं।

जो सीढ़ियां है वो स्टील की बनी हुई है इसके ऊपर जिम बना हुआ है।

कोई भी एडमिशन ले सकता है पढ़ाई में--

यह फोटो एक सैलून की लग रही है।

सैलून में बेबी प्रोडक्ट्स काफी पड़े हुए हैं ब्यूटी के जो फेस के लिए हेयर्स के लिए नेल्स के लिए होते हैं।

बच्चे बहोत मस्ती कर रहे हैं।

लेडिज के लिए सिलाई मशीन बहोत ही अच्छा व्यवसाय है।

इक्विपमेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही माने जाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ही तरह के रखे हैं।

बहोत ही प्यारा डिजाइन बनाया गया है।